यहां पर ऑटो रिक्शा है और यह ऑटो रिक्शा --

नया बिल्डिंग भी बनने वाला है नया मकान --

यहाँ एक मॉल है मॉल में प्रसाद ज्वैलर्स लिखा है ये लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे ट्यूटोरियल्स लाइब्रेरी लिखा हुआ है केमेस्ट्री --